ये एक पार्किंग प्लेस दिखाई दे रहा है हमें इसमें बहुत सारी पार्क --

और एक लड़की जाती हुई भी दिखाई दे रही है।

ये हमें एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है जोकि बहुत अच्छी तरीके से सजी हुई है।

यह हमें एक रिक्शा टाइप का दिखाई दे रहा है। जिसमें ये इसका कलर येलो रंग का है और इसके पीछे --

और इसमें म्यूजिक भी बजा रहे हैं। दो व्यक्ति एक व्यक्ति बोल रहा है। इसके पीछे ही बैठी हुई है कोई औरत है।

रेड कलर की टी-शर्ट पेनी हुई है और इसमें हमें एक येलो कलर की लाइनिंग जाती --

इसमें एक विंडो भी दिखाई दे रही है। इसमें चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर भी टंगी हुई दिखाई दे रही है हमें।